और एक येलो कलर का गेट भी लगा है और बैकग्राउंड में ब्लैक कलर का कुछ बोर्ड फोड लगा है।

और साइड का बाउंड्री एक मैरून कलर से आवत है बहुत सुंदर लग रहे--

और कुछ चेयर पड़ा हुआ है साइड पे कुछ बोतल है और सारा ऑफिस टेबुल की तरह लग रहा है।

और ये रातों का नजारा है रातों में जो जैसे बड़ा लाइट जलता है वैसे जला के ये लोग रख--

दुकान पे सारे लोग जा रहे हैं बहुत से एरिया से आते हैं ये दुकान पे।

बहोत सुंदर कलर कलर का लाइट वहां पे अवेलेबल है बहोत सुंदर लग रहा है।

यह पार्क में खेलते हैं बच्चे लोग खेलने जाते हैं।

एक ठो ऑफिस एरिया है यहां पे कुछ लोग कुछ काम के लिए आते हैं।

ये छोटा सा मंदिर भी है जो कौन सा ठाकुर है नहीं पता यहां पे--

और सारे लोग यहीं से मछली ले जाके बाहर बेचते हैं बहोत अच्छा मछली मिलता है।

ये एक बजाज का कुछ दुकान है जैसे साइड पे लिखा है प्लानेट हरजीत और कुछ ब्रांड का नाम भी लिखा है।